बहोत सारे मट्टी को कोर-कोर के गड्ढा बनाया गया है सामने एक आदमी खड़ा है जो काम देख रहा है पीछे कुछ ईंटे रखे हुए हैं बहोत सारे।

ये दो तरफ पिक्चर्स लगे हुए बहोत सारे दीवाल पे लगे हुए हैं।

हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का नाम है सिंहम हॉस्पिटल --

सामने कुछ पंछी दिख रहे हैं जो पंच पिंजरों में कैद हैं।

गेट के ऊपर लिखा हुआ है सूरज माल किशोर लाल--

बड़ा सा छज्जा बना हुआ छज्जा के ऊपर लिखा --

वहाँ फूलो लगा फूल लगाए गए हैं बैलून लगाए गए हैं।

ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है इसमें स्टूडेंट हेल्प पॉइंट लिखा हुआ है।

पुल बनी हुई है और टूटी हुई है सामने से टूटी हुई है।

अ पानी भरा हुआ है सामने टूटी हुई पुल है घास है हरे हरे--

काफी भीड़ जमी हुई है कुछ बस खोल रहे हैं बस के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं।

एक आदमी है जो फाइल लिए दूसरा आदमी को दिखा रहा हैं।

सामने केक रखी हुई है बड़ी सी केक रखी हुई व्हाइट कलर की उस पे छोटा छोटा सा रेड कलर का हार्ट बना हुआ है।

बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं बड़ी सी चौकी है उस पर कुछ सामान रखे हुए हैं।

नीचे बैठे दो औरत सब्जियां काट रही है उसके पीछे--

फॉर वर्कशॉप लिखा हुआ है।

बहोत सारे टिने लगे हुए हैं अंदर की तरफ बहोत अंधेरा सा है।

सामने एक मकान दिख रहा है मकान में कलर नहीं किया गया एक पोस्टर लगी हुई है सामने एक बड़ा सा खंबा है।

बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

बाहर एक बेंच लगी हुई है बैठने के लिए--

पत्थर से बने हैं के ऊपर रखा हुआ है।